ये एक बस स्टैन्ड है जिसमे उम्म रेड और ग्रे कलर की बस खड़ी हुई है जिसमे एक दो तीन आदमी खड़े हुए है।

यह एक नीली नदी हैआसमान स्काई ब्लू कलर का है और साइड में छोटे-छोटे पत्थर रखे हुए है पहाड़े नजर आ रही है।

कुछ बुक में लक्ष्मी जी की तस्वीर और गणेश जी की तस्वीर बनी हुई हैं।

ऊपर का छत में ग्रीन कलर का है और वाइट कलर की पी.ओ.पी. है पीछे पिंक कलर की दीवाल है।

ये पानी से भरा हुआ रोड है इस पे एक ब्लू कलर की बस खड़ी हुई है पीछे ग्रे कलर की कार खड़ी हुई है पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे खिड़की दरवाजे है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक गार्डन है आजू-बाजू ट्री नजर आ रहे हैं और साइड में एक ऑरेंज कलर का थोड़ा सा नीचे गार्डन में नजर आ रहा है।

और साइड में व्हाइट कलर की बाउंड्री भी है और साइड में झूले लगे हुए पे-प्ले ग्राउंड है बच्चो के लिए और बहुत सारे बिल्डिंग घर बने हुए है।

बॉक्स रखे हुए है वाइट कलर के और ये ठेले पे है पीछे शॉप लगी हुई है कुछ शॉप ओपन है कुछ बंद है।

बिजली का खम्भा है बिल्डिंगे हैं वायरिंग है बहुत सारी और कुछ लोग आना जाना पैदल कर रहे हैं।